कपड़ा कपड़ा उपड़ा का दुकान भी हैं बहुत अच्छा दिख रहा हैं लड़की लोग भी पहनते हैं लड़के लोग भी शीशा उषा भी बहुत अच्छा दिख रहा हैं दुकान सुंदर और सजावट भी है अच्छा--